यहाँ अध्यन सामग्री एवं खेल सामग्री विभिन्न प्रकार की सामग्री मिलती है।

तथा उसके बीच में एक खिड़की भी है जो इसके सुंदरता में चार चाँद लगा देती है।

ये एख बहोत ही सुंदर भवन है।

तथा उसके सामने एक टंकी लगी हुई है। इस टंकी से विभिन्न क्षेत्रों में पानी भी सप्लाई किया जाता है।

तथा ईद के दिन यहां सभी लोग आ कर प्रमुख रूप से ये ईद के दिन के लिए ही प्रसिद्ध होती है। ईद के दिन सभी लोग इसी स्थान पर आकर नमाज़ पढ़ते हैं।

यहां हर प्रकार की दवाई शरीर शारीरिक तथा मानसिक हर तरीके की दवाई यहां से हम खरीद सकते हैं।